ये एगो दुकान है और सब सामान टाँगल भी है डिब्बा में हरे कलर के चॉकलेट भी नज़र आवत है कुछ में बादाम भी है भैया बैठे हुवे है बेचने वाले भी।

कुछ लोग है और दूल्हा भी नज़र आ रहा है बाह बहुत सुंदर नज़ारा है भाई।